कई सारी फ्रेम भी लगी हुई हैं सितारे लटक रहे हैं और यहाँ पर बहोत सारे --

भी हैं आम के पेड़ के साथ यहाँ पे बबूल का पेड़ भी है और एक नीम का पेड़ भी है दो फल लग रहे हैं।

गेट के साथ बिजली के खम्बे भी हैं और यहाँ पे --